कुछ पेड़ छोटे दिखाई दे रहे है तो कुछ पेड़ बड़े दिखाई देखे जा सकते है।

यह बिल्डिंग जो है वह सफ़े अ बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ खिड़किया है।

जहां पर कई लोगों को एकसाथ देखा जा सकता है सामने एक व्यक्ति है जो की एक छड़ को पकड़े हुए है।

यहाँ पे बहुत सारे सीटे नीले रंग की है जिसके ऊपर एक काले रंग की पट्टी की गई है जिससे सर का दाग सिट मे ना लग सके--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी के ऊपर मे बहुत सारे फुल दिखे जा सकते है।

और ये अब चट्टान देखने मे काफी सुंदर लग रहा है और यहाँ नीचे की चट्टानों से अभी टच नहीं किया हुआ है |

जहां पर एक नाव दिखाई दे रही है नाव के अगल बगल मे बहुत सारे लोग बैठे हुए है नाव के ऊपर--

और कुछ पेड़ो को भी देखा जा सकता है सामने एक बड़ा सा पोस्ट ऑफिस का इमेज बना हुआ है नीचे--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

सामने वाइट बोर्ड है जहां पे एक व्यक्ति पढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है पीछे की दीवाल ऑरेंज दिखाई दे रही है।